सामने एक बड़ा-सा डोर दिख रहा है।

हॉल की चार पास बहोत सारे लोग है।

इधर पे एक प्रोग्राम हो रहा है।

गेट के अंदर एक बड़ा-सा बिल्डिंग है आस-पास में कुछ पेड़ है।

एक कार सर्विसिंग हो रहा है।

मंदिर के पास एक हाउस भी दिख रहा है।

दो स्पूइन भी है इधर पे बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आती है।

गाड़ी को सर्विसिंग हो रहा है।

सामने एक रास्ता दिख रहा है रास्ता में एक प्राइवेट कार एक ऑटो दिख रहा है रास्ता की पास --

सामने एक मंदिर की गेट दिख रहा है गेट के सामने एक साइकिल खड़ा है साइकिल में एक बैग है गेट के अंदर एक बड़ा सा मंदिर है मंदिर बहुत सुन्दर है।

सामने एक गेट दिख रहा है | ये एक चार्ज की गेट है | इसके अंदर एक बड़ा सा चार्ज दिख रहा है | चार्ज बहुत सुन्दर है | इधर बहुत सारे लोग आती है ।

एक चेयर भी दिख रहा है कुछ छोटा-छोटा पौधा दिख रहा है।

इधर पे एक रास्ता दिख रहा है रास्ता के सामने एक बड़ा सा गेट है गेट के अंदर एक बड़ा बिल्डिंग दिख रहा है इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहती है बिल्डिंग कि छान में एक पानी का टैंक हैं बिल्डिंग कि आस पास में --

इस दोकान में ड्रेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है।

ये एक लॉन्ड्री है | लॉन्ड्री बहुत बड़ा है | सामने एक लोक एक --

भी है | स्टेशन में एक ट्रैन खड़ा है | स्टेशन की प्लेटफार्म में बहुत सारे लोग बैठे हैं |

ये एक जिम सेंटर है जिम सेंटर बहुत बड़ा हैं अंदर बहुत सारे में --